यह मोर है जो पुरुष मेल है जो खड़ा है और वो एक केले का गाछ भी है पीछे हरियाली बहुत सारी है जो सूखे सूखे बांस पे खड़ा है।

कुछ पावरोटी के पैकेट रखे हैं अलग-अलग मिठाइयाँ भी हैं।

ये जंगल में अन्य प्रकार के अन्य पत्तियां भी है और ये थोड़ा जंगली इलाका है जिसमे शायद आदिवासियां भी रहते है बहुत सारे जानवर भी पाए जाय --

चित्र में ढेर सारे आलू रखे है आलू मट्टी से थोड़े लत-पत है।

उसके सी समाने ही आ हिंदी अखबार में रखी हुई हैं।

जो बड़े ही सुंदर लग रहे है बहुत ही फूल से उनको सजाया गया है पीछे मोर पंख भी कुछ खड़े-खड़े है।

एक कमल फूल है जो खिला हुआ है कुछ कमल की कलियाँ भी हैं कुछ गेंदे फूल भी हैं।

और कुछ सुखे घास उगे हुए है बहुत सुंदर दृश्य है यह।

गिरजा घर है जहाँ लोग जीसस क्राइस्ट की इबादत करने को जाते हैं सामने एक साफ सुथरी सड़के हैं जो के हरियाली भारी आस-पास है।

चित्र में कुछ अलुमुनियम के अ बर्तन हैं जोकि कई कामों में आते हैं या तो फिटिंग में या तो खाना बनाने में और ये अलुमुनियम बनाने की ये फैक्ट्री है जहाँ अलुमुनियम के कुछ पार्ट्स बनतें हैं।

सुंदर सा एक होटल है जिसमें सफेद सा चादर बिछा हुआ है पलंग पे बगल में एक सोफा भी है पलंग पे बहोत सारे तकिए भी हैं छह-सात तकिए हैं एक डाइनिंग है।

साईड में खड़ा है और उसके पीछे बहुत सारी हरियाली है बहुत सुंदर दृश्य है हरे- हरे लंबे लंबे पेड़--

चित्र में एक घड़ियाल है जो झील के किनारे है अगल-बगल आ कुछ घास भी उगे हुए हैं।